वृक्ष भी दिखाई दे रहे है मंदिर मे झंडे भी दिखाई दे रहे है ओर टाइल्स भी लगी हुई मंदिर मे दिखाई दे रहे है खंभे भी जंगले वे खिड़किया भी दिखाई दे रही है।

यहा पर एक मंदिर बना हुआ डी डिसाइनिंग मे फिर रहा है खिड़किया दरवाजे घंटे लगे हुए है टाइल्स भी लगी हुई है बिजलियां भी लगी हुवी दिखाई दे रही।

यहां पर एक कंपनी की कुछ मशीन सुधारी जा रही है वंहा पर एक सुपरवाइजर उसको सुधार लोग के बंदे खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बढ़िया मेला टाइप का लगा हुआ है और घ्वाचे उड़हूला भी लगी हुई हैं वहाँ पर अच्छे मकान भी बने टाइल्स वाली सड़क भी निकली हुई दिखाई दे पोस्टर भी लगे हुए हैं।